कृष्ण जी और राधा जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी ने अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काफी मात्रा में लोग आए हुए दिखाई दे रहे हैं।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

दिखाई दे रहे हैं तथा यहां पर मेज और कुर्सियां रखी हुई है तथा उनके ऊपर छत्रियाँ लगी हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहा एक रेल्वे स्टेशन है यहां पर रेल की पटरिया अभी खाली दिखाई दे रही है।

ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा यहाँ एक स्कूल की इमारत बनी हुई है तथा यहाँ पर एक दो गाड़ियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें लडिया लगाई गई है मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यह नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं।

इसमें एक छोटा सा गेट बना हुआ दिख रहा है यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है तथा यह --

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूँ एक सड़क के किनारे एक मैदान दिखाई दे रहा है उस मैदान में --

जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

एक महिला छाता लेकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा आसपास काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर जमीन की खुदाई मशीनद्वारा की जा रही है।

यहां लोहे का बड़े बड़े रॉड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है इस चट्टान की दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर नजारा है बहुत सारे छोटे-छोटे घास फूस और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक बगीचा है इस बगीचे में तरह-तरह के फूल के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर काफी सारी झाड़ियां उगी हुई दिखाई दे रही है यह एक जंगली इलाका दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक प्राचीन कालीन दरवाजा है यह दरवाजा बहुत ही मज़बूत है।

की गई है यह बहुत ही सुंदर लग रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है यहां पे तिरंगे झंडे को --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक टेबल के ऊपर प्लेट चम्मच ग्लास कटोरी सभी चीजे रखी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां काफी तरीके के टेलीफोन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे पुराने जमाने में --

इसी प्रकार के टेलीफोन हुआ करते थे यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत और बहुत ही ज्यादा अच्छी आवाज वाले टेलीफोन हुआ करते थे।

तथा यह पूरे फूल की मालाओं से लदी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक काले रंग की प्लेट रखी हुई दिखाई दे रही है तथा इस प्लेट में --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह तस्वीर बहुत ही ऊंचाई से ली गई है यहाँ चारों तरफ बहुत बड़े-बड़े --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं तथा जमीन पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है यहाँ आसमान में बहुत --

गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां दिखाई दे रही है तथा इन मोतियों के आगे --